पीले कलर की बस है अ शीशा है पेड़ है।

बिल्डिंग है लोहे का गेट है पेड़ है छोटी-छोटी न नल है।